खोटे लड़के दिखाई दे रहे है जिसमें

पानी में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इस क्षेत्र मे हमें एक बड़ी-सी आकार की इमारत दिखाई दे रही है तथा उसके आस-पास कुछ हरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो कि वातावरण में बहोत ही सुंदरता को बढ़ा रहे हैं।

जो भी वो हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ इसमे कई सारे यात्री सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

थो- इसमें ऐसा लग --